यहाँ पे गाड़ी से साइकिल से बाइक से सभी लोग आते हैं। घुमने के लिए खरीदारी करने के लिए --

यह एक जिम है। यह जिम में बहुत सारी मशीने है।

यह एक डांस एकेडेमी है। इस एकेडेमी में डांस करने के लिए सीखने के लिए बहुत सारे --

बहुत तरह - तरह के खेल खेलने के लिए इस स्टेडियम में आते हैं।

यहाँ पे स्कुल के लिए दौड़ने के लिए रन रनिंग रेस हो रही है।